सेल्फी ले रहे हैं और कुछ व्यक्ति जूतों में हैं। कुछ व्यक्ति चप्पलो में हैं। कुछ व्यक्ति --

और यहाँ पर संतरे भी हैंअनार भी हैंकेले भी हैं।